मोर एक खुटे पर खड़ा है और साइड में बहुत सारे कपड़े बोरे और नारियल के पेड़ है और गंने का भी है। पीछे में बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।

और इसके चारों ओर ग्राउंड किया गया है और लाइटिंग भी की लाइटिंग की भी व्यवस्था है।

और आप देख सकते हैं एक आंटी है जो की बोको मछली को समेट रही है और एक अंकल एक मछली की --

बैनर लगा हुआ है जो कि मूवी का है द कश्मीर फाइल का और सामने एक पेड़ है नारियल का और बिजली का खम्भा है और ये बिल्डिंग बहोत ही अच्छे लग रहे है देखने में ।

और उसके पीछे में दो बिजली के खंभे है बड़े-बड़े और इधर ल लोहे का ग्राउंड बना हुआ है और ये पहाड़ बहोत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में।

बहुत ही अभी मन में हलचल सभी बातों को बताने के लिए यहाँ पे --